सब चेयर आपस मे सट के लगे हुए हैं चेयर का कलर ब्लू है और पीछे मे --

उसके ऊपर एक कच्ची मकान है जिसमें चार खिड़कियां दिख रही है।

साइड में एक बहोत बड़ा पेड़ भी है जिसकी पत्तियां ऊपर तक हैं और --

साइड मैं एक पेड़ दिख रही है जो बड़ा बहुत बड़ा दिख रहा है और नीचे मैं एक मोरे की डिज़ाइन की डिज़ाइन बनी हुई है जिसकी कलर वाइट है |

दुकान के आगे दो बांसें भी खड़ी दिख रही है।

छोटा सा उसके ऊपर एक बड़ी सी पेड़ दिख रही है और --

वाइट कलर की रेलिंग दिखाई दे रही है जो --

दुकान में बहुत सारी लाइटें जल रही है और --

और साइड में साइकिले भी लगी दिखाई दे रही है और --

की नु ऊपर मे नुकीले धारी बनी हुई हैं और साइड मे हरे भरे खेत नज़र आ रहे हैं ।

कि तीन मंज़िलाइ दिखाई दे रही है।